एक साइड हैंगर में ब्लेक कुर्ते रेड कुर्ते ग्रीन अलग अलग तरह के कुर्ते लगे है एसी लगी है लाइट लगी है पीछे की तरफ टाईल्स लगे हुये है ऊपर काँच के--

और एक औरत बुड्ढी-सी सितार बजा रही है तीन चेयर्स लगी हुई है ऊपर से डेकोरेट हैं पीछे से पोस्टर लगे हुए हैं ऊपर भी पोस्टर लगे हुए है नीचे ग्रीन कलर का कारपेट हैं तार लगे हुए हैं ऊपर माइक लगे हैं।

बहोत सारी बसें खड़ी हुई है लाइन से एक आदमी खड़ा हुआ है नीचे उतरने के लिए जीना बना हुआ है ऊपर की तरफ बोर्ड लगा है इसके ऊपर छत डली है छत के ऊपर ट्यूब लाइट लगी हुई है।